ये यूनियन गर्वेंट कॉलेज है यानी की प्राइवेट कॉलेज है।

ये वी टू मॉल है।

ये प्राइवेट संस्था का मॉल है ।

किसी भी बर्थडे फंशन में आप केक यहाँ से अवेलेबल कर सकते है और इसमें --

कोई भी सलूशन के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते है ।

जो कुछ भी है कर सकते है इसमें मॉर्निग में ।

दौरने के लिए या फिर बच्चो को खेल कूद करने के लिए --

बहुत ही अच्छा ऑफिस है ये ।

यह एक मो म्यूजिक सिस्टम का दुकान है यहा --

गिटार पियानो हारमुनियम तबला --

यह कनेरा बैंक है यहाँ पर आकर के आप --

पिता अपने पुत्र के साथ झील पे आया हुआ है खेल रहा है।

यह एक पार्किंग का दृश्य है जिसमे एक कार ऑलरेडी खड़ी है।

जैसे की आप रोड पे पार्क नहीं कर सकते है कार वगेरा तो पार्क करियेगा तो टो हो जायेगा।

यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आये हुए हैं।

आप एक बार अवश्य यहां पे आइए और कॉफी का आनंद लीजिए।

यह एक आर.सी.एस. प्राइवेट आई.टी.आई. कॉलेज है।

देख सकते हैं यह एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है ।

सोनपुर जो की एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है इस मेले में भी जा सक --

बैट और बॉल को कैसे दस दसाया जा रहा है। इस दुकान पे आकर के आप --

इ तरह-तरह का क्रीम पेस्ट --

यह एक रेलवे ट्रैक का दृश्य है जिसपे आप देख सकते है कि एक ट्रैन खड़ी हुई है।

यहाँ पे सकते हैं कि एक मैकेनिक कार को कैसे ऊपर में टो करके उसकी जो खामियां हैं --

यहाँ पे आके वेज और नॉन वेज दोनों समान इजी वे में उपलब्ध ले सकते हैं।

बहुत ही अच्छा रेस्टुरेंट है ये। आपको अच्छे से सारे सारा मतलब पाक-पकवान जो भी है बहुत अच्छे से --

देखते हैं जैसे की डेट ऑफ़ बर्थ नेम एड्रेस --

का प्रबंध कराया गया है जो कि पेशेंट को लेके आ --